वो लोग खाना खे खा और नाश्ता करने वाला है बहोत अच्छा लगता है दिखने में बहोत है दिखने में बहोत अच्छी लग --

देखने मे बहुत अच्छे लगते है और हरे-भरे बी पेड़-पौधे है बहुत अच्छे लगते हैदेखने में---